हरी-हरी है यह बहोत ही सुंदर दिखाई पड़ रही है यह जगह--

दूर में एक फार्म हाउस भी दिखाई पड़ रहा है जो बहुत बड़ा है इधर बहुत सारॆ पौधे दिखाई --

यह एक बहोत बड़ा का गेट दिखाई पड़ रहा है।

मर्द दिखाई दे रहे है यहाँ पस एक औरत साड़ी पहनी हुई है।

साले मछलियां दिखाई दे रही है इन मछलियों में बहोत सारे--

यहाँ पर स्टीकर भी दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर दौड़ और वीना को तो धरे हैं और एक--

हाँ बगल में बहोत सजायट की गई है।